यहाँ कस्टमर्स भी है जो यहाँ पे सामान खरीद रहै है।

अ कुछ मशीन वासिन वगैरा इस पे रख रखी है साथ ही यहाँ पे कुछ गाड़ियां है यहाँ कुछ घर है।

और एक साइड में एक टिन का छोटा सा घर भी बना हुआ है साथ ही पीछे एक--

और यहाँ बोहत सारा सामान रखा हुआ है बोरी में पैक--

इसमें ऊपर बिल्डिंग दिख रही है साइड में एक गाड़ी है जिसपे एक लड़का बैठा हुआ है उसके पीछे एक दीवार भी है।

पीछे मिट्टी का साफ़ सुथरा एकदम ग्राउंड है बहोत यारा--

इस अ यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है की एक एक रोड गया है एक सड़क गई है।

एक लड़की है साथी एक कोई बूढ़ा-बूढ़ा आदमी है जो हाथ में--

यहाँ पे हमको इस इमेज में दिख रहा है कि एक आदमी है न एक शॉप लगाया हुआ है जहाँ हरा कलर का--

काँच-काँच का लगा हुआ दिख रहा हैं।

इसमें कुछ ए_सी या लगे है साथ ही यहाँ लिखा हैं होटल गुड लक शायद ही ये कोई होटल है।